यहां एक बहुत बड़ा गोल राउंड बना हुआ है पानी बहुत साफ है धुआँ धार दिख रहा है।

यह प्लेट है जिसमे चिकन रखा हुआ है थोड़ा सा दही रखा हुआ है चिकन के चार पीस रखे हुए हैं ब्लैक कलर की प्लेट है दो काले दिख रहें हैं चिकन लेग पीस है।

ये मोबाइल मे सेल्फी ले रहा उसका टेबल पे चश्मा रखा हुआ है पर्श रखा है के --